इस जिम के अंदर एक टेबल पर बहुत सारे अवार्ड --

इस दुकान के काउंटर पर एक आदमी बैठा हुआ है।

मुझे इस फोटो में एक बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।

इन मैदानो में छोटे छोटे हवन कुंड--

इस डी_जे के पीछे कुछ औरते नाच रही है इस डी_जे के ऊपर लिखा है श्री साईं डी_जे --

येलो है इस बिल्डिंग मे बहोत सारी खिड़कियां लगी हुई है।

इस दुकान में कुछ शेल्फ बनी हुई हैं और दो काउंटर --

मुझे इस फोटो में एक टेबल दिखाई दे रही है।

इस इमारत के कॉर्नर में एक आदमी दिखाई दे रहा--

मुझे इस फोटो में एक ऑफिस दिखाई दे रही है इस ऑफिस में एक टेबल --

और कुर्सी रखी हुई है स्टॉप ऑफिस के सेल्स में बहोत बड़ी बड़ी मोटी किताबें दिख रही--

मुझे इस फोटो में एक नदी दिखाई दे रही हैं।

इस नदी में एक नाव भी दिखाई दे रही है इस नाव की छत पर पीले कलर का--

इस लड़के ने हरे कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की हाफ पैंट पहनी हुई है।

दुकान दिखाई दे रही है इस दुकान में एक कार खड़ी है।

इस दुकान के अंदर पोस्टर पर लिखा है फोमवॉशिंग स्टीमवॉश --

इस रूम मे दो बड़ी बड़ी मशीने लगी हुई हैं।

मुझे इस चित्र में एक गैरेज दिखाई दे रहा है।